नजर आ रहे हैं यह रेड कलर का ऊपर एक झंडी नजर आ रही है।

और एक ये गैस पंखा भी नजर आ रहा हैं और ये अच्छी फैक्ट्री है कूलरों की उधर साइड में ये वक्ति चलते जा रहे हैं आ रहे हैं।

साइड में पौधे नजर पोस्टर लगा हुआ है उसमें लेडिस फैंसी कुछ साड़ियों के ऊपर शब्दों में लिखा गया है।

इस फोटो में ये एक बैंक है और ए_टी_एम इसके बाहर ए_टी_एम का पोस्टर लगाया है एक व्यक्ति है जो ए_टी_एम से पैसे निकालने अंदर गए हैं।

के नीचे अच्छी सड़क नज़र आ रही है।

यह नीले कलर की कोर्ट पहेना है ये देख रहे हैं कि भल्लो या नालो--

इस फोटो में ये कोई एक गाड़ी की इमेज खुर्सी नजर आ रही है इसपे ये गाड़ी कैसीइ कुर्सी पे हुई है व्हाइट कलर ब्लैक कलर की नजर आ रीं है।

इस फोटो में ये कोई पत्थर है पत्थरों के उसी से दिख रहे हैं।

ये कोई कपड़े की शॉप है इसमें बहोत कपड़े हैं कपड़े नजर आ रहे हैं रंग बिरंगे कपड़े हैं।

और ये कॉपी भी है कार्ड भी पड़े नजर आ रहे हैं ऊपर एक फ्रेम है व्हाइट कलर का वो दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में ये एक चेयर नज़र आ रही है रेड डस्टबिन पड़ा है नीले कलर का उधर साइड में ये दोब लग रही हैं अच्छी हरियाली है दोब हैं।

इस फोटो में यह कोई शॉप है परचून की शॉप हैं इसमें यह तरह तरह के चिप्स पड़े नजर आ रहे हैं।

और उधर से कुछ बक्स बोक्सो में फाँकियाँ भी पड़ी नजर आ रही हैं और बाहर कुछ कैंटर पड़े हैं रेड कलर का व्यक्ति बैठे हैं जिसके ब्लैक कलर की बैट पहनी है।